यहाँ ऑटो पर माला चढ़ी हुई है जो फूस पुष्प की हैं। पुष्प लग रहे है। यहाँ पर दो प्रकार के फुग्गे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ओ गो गुलाबी कलर का लगा हुआ है एक सफेद कलर का है।

यह एक नीले कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें बैंक लिखा हुआ है। ये बाजू में एटीएम लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे ए-सीढ़िया दिखाई दे रही हैं।

कार दिखाई दे रहा है। इसमें जीप की तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारी बाइक दिखाई दे रही है और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो गुलाबी कलर की शर्ट पहने हुए है। ये देखने में दिन का सीन लग रहा --

दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे फुग्गे दिखाई दे फुग्गे तीन कलर के हैं। यह एक रेड कलर का है।

ये ब्लैक कलर के है। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाई दे रही हैं पीछे ईसामसीह दिखाई दे रही है। यहाँ पर सफेद कलर की दीवाल दिखाई --